यह एक रूम है और इस के अंदर एक लकड़ी से बना हुआ सोफा रखा हुआ है।

इसके अंदर एक स्टील का बर्तन रखा हुआ है।

अंदर तीन कटोरी और उनमें कुछ खाना है।

जिसके ऊपर एक नीले कलर का पानी का टैंक रखा हुआ है।

और इसके पास में एक गैस सिलेंडर भी रखा हुआ है।

इसकी दीवारों पे कुछ तस्वीरें भी लगी है।

यह एक ग्राउंड है जिसके अंदर बहुत से लड़के खड़े हुए हैं।

वो लड़के के पास में कुछ बैग भी रखा हुआ है।

जिन पर लाइट लगी हुई है और रिक्शा के पास में कुछ कचरा भी पड़ा हुआ है।

और इसके बाहर एक लड़की और छोटा बच्चा खड़ा हुआ है।

और इसके अंदर एक ऐ_सी भी है।

और काउंटर में कुछ खिड़कियां भी लगी हुई हैं।

जिनपे कुछ रजाई और औरत भी बैठी हुई है।

और छतों में कुछ लाइट लगी हुई है।

यह एक घर है जिसके अंदर बहुत से गेट लगे हुए हैं।

और इसके आगे बहुत सी औरत खड़ी हुई है।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

यह एक दुकान है और इसके अंदर एक आदमी खड़ा हुआ है।

और इसके अंदर बहुत सा सामान रखा हुआ है।

और इसके अंदर एक टेबल रखी हुई है जिस पर कुछ सामान रखा हुआ है।

यह एक दुकान है इस दुकान के अंदर बहोत सा सामान रखा हुआ है।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

और कार के पास में बहुत सा सामान रखा हुआ है।

इस तस्वीर में बहुत सी गाय दिख रही है।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

और पास में कुछ कागज भी हुए हैं।

और इसने ब्लैक कलर का टी शर्ट पहेन रखा है।

और दीवार पर एक एल_सी_डी और ए_सी भी लगी हुई है।

और पास में कुछ घर मकान बने हुए हैं।

और जीने पे कुछ लोहे की ग्रिल भी लगी हुई है।